ये एक स्कूल है कक्षा है जिसमे मेडम पढ़ रही है और रेड कलर की शाड़ी पहनी हुई है बच्चे ने भी नीले रंग का कपड़ा पहना है काफी रखी हुई है ।

आंख खुला आसमान है पहाड़ दिख रहे हैं दो बस दिख रहे हैं जिसमें हरा नीला और मेहरून कलर के पत्ते दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति है ठेला और बैग टंगा है वाइट कलर का काले कलर के कपड़े पहने हैं एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है चेक वाली शर्ट पहना है और नीचे जमीन है पीले कलर की।

नीले कलर की खिड़की हैं आसमानी कलर की है अंदर लगा हुआ है झाड़ हैखुला आसमान है।

पल हो रही है खेती हो रही है और पुरा ।